और उसपे टेबल कवर रखा हुआ है और सामने में सोफे भी रखे हुए--

काफी मिट्टी है मैदान में थोड़ा बहुत ही घास नजर आ रहा है इस मैदान में।

दुकान में ये आकाश सी कार रखा हुआ है यहां पे गाड़ी भी पार्क की हुई है।